यहाँ पे बड़ा सा तलाब है जो नाव में दो आदमी मछली पकड़ रहे है नाव में कार्टून वाटून बड़ा सा--

टोपर -ओपर लगा के यहाँ पर मार्केट बनाये है लगाये है दुकान -उकान लगाये है बहुत भीड़- भड़ाका इलाका हैं ।

कहीं जाने के लिए और उधर बहुत बड़ा - बड़ा बिल्डिंग भी है एक ठो बड़ा सा बिल्डिंग है।